जहाँ पे एक आदमी एक लम्बी सी साड़ी दिखा रहा हैं खोल के और बहुत सारे रंग बिरंगी साड़ियां रखी गई हैं।

नीचे की तरफ हरियाली है ऊपर की तरफ खुला आसमान है। आसमान का रंग जो है सफ़ेद है।

इस चित्र मे जो है एक पार्किंग की जगह की तस्वीर है।

में जो है एक ऑफिस की तस्वीर है जहाँ पे अ नीले रंग की अ टेबले रखी गई हैं और पानी की बोटलें रखी गई है।